कुछ छत दिखाई दे रही है जहा पर लाइटे लागि हुई है पंखे लगे हुए है पंखे सफ़ेद रंग के है बीच में एक --

यहा पर एक रेस्टॉरंट का जिसमे नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है बीच मे टेबल दिखाई दे रही टेबल के आस पास कुरसिया पड़ी हुई है ऊपर की छत दिखाई दे जहा पर जाली लगी हुई है हरे हरे पत्ते --

यह पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि पत्थरों की बनी हुई है एक बोर्ड लगाअ हुआ है जो हरे रंग का है उसमे कुछ लिखा हुआ है।